इस पर एक ध्वज भी लगा हुआ है जो संतरे रंग का ध्वज लगा है भगवा रंग का ध्वज ल--

और साथ ही में एक पार्क है यहां पर काफी सारे पेड़ पौधे हैं बहोत ही सुंदर मौसम बन रखा है परंतु धूप भी है।

बैठे हुए है कुछ बच्चे बैठे हुए हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं कुछ यहां पे कोच भी आ रहे हैं यहां पे क्रिकेट की प्रैक्टिस हो रही है ये एक क्रिकेट ग्राउंड है।

दूर दूर तक नदी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है।

की यह एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप हैं।